टीम की दुकान में बैैठकर सेल्फी लेने का ये रिवाज --

यह एक बांध है और इसके किनारे सीढ़ियां और रोड बनी है जिसको देखने के लिए पर्यट आते हैं और मनोरंजंन करते हैं और इसे देखकर बहुत ही अच्छा और शांत महसूस हो रहा है --